कार रखी हुई दिखाई दे रही है मझे यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं अच्छा आसमान नीला-नीला दिखाई दे रहा है और देखने में बहुत ही सुंदर नजारा मिल रहा है।

यहाँ का देख सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है आसमान दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है।

मुझे यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है एक मतलब नाद सा रखा हुआ है जिसके ऊपर से पानी ऐसा आ रहा है ऊपर से उसके चारो तरफ बहुत ही अच्छे से सजाया गया है।